यह एक गोल्डन कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर लाइट भी दिखाई दे रही है।

और गेट पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर गेट नंबर फोर लिखा हुआ है और बाहर दो आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में एक सोफा दिखाई दे रहा है सोफे के पीछे एक दीवार दिखाई दे रही है जिस पर गोल्डन कलर किया गया है।

और दुकान के पीछे भी कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में छह आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनमें से चार के चेहरे ढके हुए हैं और दो के चेहरे पर गुलेल लगी हुई है।

इस तस्वीर में तीन लकड़ी के सोफे रखें हुए हैं जिन पर गोल्डन कलर का पेंट किया गया है।

इस तस्वीर में दो कुर्सियां दिखाई दे रही हैं और पीछे कुछ लोहे का सामान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में सात आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं।

दीवार पर पर्दे भी लगे हुए हैं और दीवार पर एक घड़ी भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक होटल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

इनमें एक तराजू भी दिखाई दे रही है और कुछ साइकिल भी दिखाई दे रही है।

इसमें एक साइकिल भी खड़ी हुई है और एक बक्सा भी रखा हुआ है।

इसमें तीन गेट भी दिखाई दे रहे हैं और फर्श भी दिखाई दे रहा है नीचे।

इस तस्वीर में एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बीच में सड़क भी दिखाई दे रही है।

दुकान में अंदर एक ट्यूबलाइट भी लगी हुई है और बाहर दो एल_ई_डी बलब भी लगे हुए है।

और मकान के पीछे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

जिस पर सफेद अक्छरों में कुछ लिखा हुआ है।